एक आदमी का हाथ एक फूल पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बोहोत प्यारे प्यारे फूल्स दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

सड़क के किनारे एक फलों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक आदमी गुलाबी रंग की शर्ट पहने--

इस नर्सरी में काफी सारे पेड़ पौधे--

ग्राउंड में कुछ गेम्स चल रहे हैं।

उस रोड पर एक सफेद कलर की एंबुलेंस खड़ी हुई है।

उस रूम के ऊपर फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है।

लैब के अंदर एक आदमी व एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

स्कूल के बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड भी--

जबलपूर कटनी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक मोबाइल की शॉप दिखाई दे रही है।